मुझे यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां पर कई सारी पेंटिंग्स दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर कई सारी टाइल्स दिखाई दे रही हैं।

ऊपर की ओर एक बड़ा सा आसमान भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर फंक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है।

आस पास में कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर कई सारी फूलों की मालाएं दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहोत सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं।

बेंच पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ दिख रहा है।

आस पास मे काफी सारी हरियाली और पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

यहां पर कई सारी चेयर दिखाई दे रही है।

यहां पर कई सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।